दक्षिण बिहार के अंदर ये विद्यालय है जो कि सेंट्रल युनिवर्सिटी ऑफ़ साउथ बिहार के नाम से जाना जाता है। .